यह एक ढाबा है जहां रात का समय है लाइटिंग पूरी लगी हुई है और यहां दो टेबल --

और लैपटॉप भी दिखाई दे रहा है।

और अंदर में एक अंकल बैठे हुए नजर आ रहे है।